ये रखा गया है नीचे टाइल्स लगे हैं।

यह एक घर का चित्र है यहां बहोत सारे पेड़ नजर आ रहे--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

यह एक मंदिर का चित्र है।

बहोत सारे लोग नजर आ रहे हैं।

बिजली के तार लगाए गए है गेट और खिडकीया नजर आ रही है।

लाइटें लगी हुई है पंखा है।

कुछ व्यक्ति खड़े हैं कुछ बैठे हैं।

बिजली का तार दिख रहा है कुछ गाड़ियां खड़ी है एक बड़ा सा पोस्टर लगा है।

यह एक दुकान का चित्र है यहां टेबल एंड चेयर रखे हुए हैं।

दीवार में एक भगवान का तस्वीर है।

जहां बहोत सारे नाव दिख रहे हैं।

इसपे बहुत सारे लोग बैठे हैं कुछ औरतें हैं तो कुछ पुरुष है।

बहोत सारी वस्तुएं रखी हुई है डमरू है।

यह एक रेस्टोरेंट का चित्र है यहां बहुत सारे टेबल और चेयर लगाए गए हैं।

यहां बहुत सारे मंदिर नजर आ रहे हैं।

यहां एक हवाई जहाज नजर आ रहे हैं।

औरतें हैं दो बूढी औरत व्हीलचेयर पे बैठी है।

और कुछ खड़े हैं आधी चेयर ख लगी है पेड़ के पीछे घर बना हुआ है।

लोहा का गेट लगाया गया है खिड़की भी है।

पहाड़ के नीचे कुछ टेंट भी लगाया गया है।

यह कपड़े के दुकान का चित्र है यहां बहोत सारे डब्बे रखे हुए --

यहां बहोत सारे व्यक्ति नजर आ रहे हैं जो खड़े हैं।

यह एक किताब की दुकान का चित्र है।